यहां पर कई सारे लोग जाते हुए देख स देखे जा सकते हैं।

यह एक हाइवे का व्यू है।

यहां पर लंबी सीढ़ियां देखी जा सकती हैं।

तथा काफी सुंदर बैंक है।

यहां पर एक फैन लगा हुआ है तथा यहां पर काफी सारी डायमंड्स और एक फ्रीजर भी रखा हुआ है।

यहां पर पेड़ पौधे भी देखे जा सकते हैं।

यहां पर सीढ़ियां भी देखी जा सकती हैं।

यहां पर बहोत सी गाड़ी भी खड़ी हुई हैं।

यहां पर कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई देखी जा सकती हैं।

जेह एक गांव का व्यू है।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

तै अन्यथा यहां पर पार्किंग के लिए भी सुफीला सुविधा उपलब्ध है। यहां पर बाइक खड़ी हुई हैं।

यह एक मॉल के ऊपर का व्यू --

यहां पर तरह तरह के फूल मिलते हैं।

पीछे काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए देखे जा सकते है।

मि जो ऑटो में जाता हुआ देखा जा सकता है।

पेड़ के बगल छोटा सा डस्टबीन रखा हुआ है।

और यहां पर तरह तरह के फ्रूट्स मिलते हैं।

यह एक वी_आई_पी एरिया के रूम का व्यू है।

यहां पर अ कांच का गेट लगा हुआ है।

इसके बाहर कार्स खड़ी हुई हैं और एक पेड़ भी लगा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और यहां पर एक बोर्ड है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर इस टायर कंपनी का नाम अपोलो है।

यहां पर एक आदमी स्पीच देते हुए भी देखा जा सकता है।

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा जा सकता है जिसमें लाइट जल रही है।

यहां पर एक टेबल भी पड़ी है जिसके ऊपर बैग और बॉटल जैसे सामान रखे हुए हैं।